पर बहुत सारे फल दिख रहे है ठेले में लगे हुए--

यह एक दूध संखलन दुकान है जहाँ पर बहुत सारे मीठाई दिख रहे है और एक लड़की भी बगल में दिखाई दे रही है और-- .

यहाँ पर एक इंसान अपना फोटो खींचा रहा है और पीछे बहुत सुंदर दिल बना हुआ है और स्टेज भी बहुत सुंदर सजा हुआ है और वह आदमी काले --.

बहुत बड़ा घर भी दिखाई दे रहा है और घर के अगल -बगल में पेड़ -पौधे बहुत सुन्दर दिखाई दे रहे है और दूर का नज़ारा भी बहुत सुन्दर दिख रहा है और --.

यहाँ भी एक ज्ञानी राम पेट्रोलियम अअअ सेंटर है जहाँ पर अ बहुत बड़ा जगह है खुला मैदान है यह जैसा दिख रहा है आसमान सफेद दिख रहा है और यहाँ पर एक कार आकर रुकी हुई है।

यह एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहें है और अग बगल में एक छत्रछाया बना हुआ है और--

और गेट के बाहर में एक रेड रंग का चद्दर बिछाया गया है और साइड में बहुत सारे बाइक दिख रहे है और उसके साइड एक दुकान भी दिख रहा है। .

बहुत सारे लोग दिख रहे है और कुछ लोग मछली काढ़ भी रहे है और यहाँ पर जाल भी दिखाई दे रहा है मछली का और-- .

आगे में छोटे -छोटे घास पिले-पिले रंग में दिखाई दे रहे है और उस साइड में पत्थर सफेद रंग का दिखा रहा है और--

जगह सुनसान दिख रहा है और इस जगह का बहुत सा-- .

बहुत ऊंचे -ऊंचे पेड़ भी दिखाई दे रहे है और बहुत छोटे -छोटे भी पेड़ -पौधे भी दिखाई दे रहे है और साइड में लोहे का खम्भा भी दिखा रहा है और --

ए जैसा दिख रहा है और एक तार भी दिखाई दे रहा है और मछली कटे -फटे भी दिखाई दे रहे है और अगल-बगल इंसान भी दिख रहे है और यहाँ पर-- .

यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है और यहाँ ड्रॉइंग प्रतियोगिता चल रहा है और यहाँ पे एक हॉल जैसा दिखाई दे रहा है जिसके अंदर में बहुत सारे लोग ड्रॉइंग कर रहे है।

हरे पत्ते लगे दिखाई दे रहे है और घर के पीछे में एक बहुत सारे पे पेड़ -पौधे भी दिख रहे --

यहाँ पर एक बहुत बड़ा नदी दिखाई दे रहा है और उसके उसमें बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहे है और नदी के किनारे में रेत भी दिखाई दे रहे है और--

यहाँ अभय सेल ऑटो सेल दिखाई दे रहा है जहाँ पर बहुत सारी स्कूटी भी दिखाई दे रहीं है और यह बहुत बड़ा दुकान दिखाई दे रहा है और बहुत सुन्दर-सुन्दर बड़ा-बड़ा दुकान भी दिखाई दे--